बस स्टैंड दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है हरा कलर का वो रखा है और--

बोल रखा है बोर्ड लगे हैं वहां बहोत सारे--

मैदान दिखाई दे रहे है वहां मेरे को टंकी र रखी मील रही है --

रखी है और सामने मेरे को बहुत सारे लड़के देख रहे वहां बहुत सारे खेल रहे हैं वहां दिखाई दे रही है।

घर दिखाई दे रा है सामने और सामने एक बोर्ड है और भी है सामने एक है घर है सामने--

सा सा नीचे से पेड़ दिखाई दे रहा है और आजू बाज़ू बहोत सारे ये खम्भे दिखाई दे रहें--

वहा मेरे को एक कार की वो दिखाई दे रही है दुकान है वहा नीचे टाइल्स लगी है ये--

पीछे बोरी दिखाई देने खूब सारी वहां बह--

गेम दिखाई दे रही हैं अ वहां मेरे को बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं अ बहुत सारे बोरा रखे हैं।

मशीन खड़ी सीमेंट वाली जिसने सीमेंट बर रहा है।

मेरेको एक ए_सी भी दिखाई दे रही है वहां मेरेको एक कार दिखाई दे रही है मेरेको।

सामने मेरे को एक लड़का खड़ा मिल रहा है सामने खम्भे लगे हैं।

गुब्बारे लगे हैं और एक कार दिखाई दे रही है अंदर टाइल्स लगी है घास लगा बोरा बिछाया है और मेरेको वहां--

सामान दे रहा है और एक दुकान बंद है और एक कांच की दुकान है और ये--

काउंटर रखा है काउंटर में सामान रखा है खूब सारे और नीचे फाइल्स हैं और अंदर दो बोरा बिछे हैं और उसमें टाईल्स लगी है।

घर दिखाई दे रहा और अह उस साइड घर दिखाई दे रहा है मेरे को लो--

दिखाई दे रही है और वहा बोर्ड लगा है मेरे को पुलिस वाला खड़ा है।

अ भीड़ लगी है और उसमें भवानी नारियल--